पेऔर एक सफेद कलर की बिल्डिंग बनी हुई है जि --

और ऊपर ना एक गेट लगा हुआ हैजिस --

बहुत सारी चेयर रखी हुई है सफ़ेद कलर का |

और एक ना अ मेस्सी कलर की कथै सी कलर की कुछ बाहर की टाइप खिड़की से लट --

और साइड में उसका हेलमेट रखा हुआ है ब्लैक और रेड --

फ्रिज के ऊपर दो बिसलरी की बॉटल रखी हुई --